सामन बहुत लम्बा है देखने में बहोत अच्छा है और बगल में थरमस और दो डब्बा बोटल पानी का रखा गया है पूरा अच्छा लगता है देखने मे --

बीच में नदी है । नदी का बगल-बगल दोनों साइड पूरा घेरा हुआ और वृक्ष सब है । वृक्ष बोहोत अच्छे हैं। कुछ वृक्ष का पत --